यहां पर एक लोके का ब्लू कलर का गेट लगा है जो गेट .

दोनों तरफ रेड और ब्लैक कलर की बाउंड्री वॉल की गयी है।

ऊपर ब्लैक और येलो कलर की कुछ लाइट लगी है सामने की तरफ कुछ पोस्टर भी लगे हैं।

यहां पर एक क्लाशरूम है क्लाशरूम में बहुत सारी चेयर लगी हुई है जिस पर टेबल .

यहां पर पीछे पिंक कलर का एक बिल्डिंग है जिस पर ब्लू कलर का पोस्टर लगा है सामने की तरफ ग्रीन कलर का बिल्डिंग है चारों तरफ सफेद कलर की।

बाउंड्री वॉल है बीच में गार्डन है जहां पर घास लगी हुई है।

जो खुला हुआ है साइड में एक व्हाइट शटल लगी है उसके ऊपर रेड ब्लू कलर का पोस्टर ल--

मने की तरफ कुछ स्कूटी बाइक खड़ी है दूसरी तरफ भी शॉप है जिसका शटर भी ओपन है अंदर इसमे--

दोनों तरफ और भी दुकानें हैं जिनके बहुत ही सुंदर पोस्टर लगे हैं ऊपर जो बिल्डिंग है वो व्हाइट कलर का है जिसमें विंडो लगी है ब्लैक क।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रूम लाइट पिंक और व्हाइट कलर का है व्हाइट लाइट लगी है।

अंदर कपड़े का तोरण शुमर लगा हुआ है बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑरेंज ड्रेस पहनी है।

आगे की तरफ बहुत सारे टेबल्स और चेयर लगे हैं वहां भी पोस्टर लगे हुए हैं।

के कुछ रेड कर्टेन्स लगे हैं और कांच की दीवारें--

रखे हुए हैं जस्ट सामने जो दीवार है वो।

मिरर की बनी है वहां व्हाइट लाइट लगी है बहुत से लोग आ रहे--

इसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी है जिसमें ब्राउन कलर के पर्दे लगे हुए हैं नीचे व्हाइट कलर के बहुत सारे।

यहां पर एक रूम है जो व्हाइट कलर का है जिसमें ब्लू कलर के पर्दे लगे हैं ऊपर ब्लू कलर की कु--

और व्हाइट कलर का इसका भी गेट लगा है रोड पर से कार जा रही है कुछ झूला लगा हुआ है।

और ब्राउन कलर का है जो और सामने कुछ रिसेप्शन एरिया है।

इस पर कुछ सामान है सामने की तरफ व्हाइट कलर की एक वॉश बेसिन लगी है।

सीढ़ियां बनी है सीढ़ियों का एरिया है जहां से ऊपर आने का रास्ता है सामने की तरफ कुछ और भी रूम बने है।

और सामने की तरफ कुछ बहुत सारे मिरर भी लगे हैं यहां पर येलो और।

व्हाइट लाइट लगी हुई है एक व्यक्ति है जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी है।

ये एक कार खड़ी हुई हैं वहाँ पर बाहर आ गई हैं अंदर की तरफ भीं कुछ--

यहां पर ये बहुत सारे बड़े पेड़ लगे हैं नीचे बहोत ।